यह इमेज किसी मॉल का है। जहाँ पर ये फोटो लिया गया है।

किसी तालाब नदी या समुद्र का नज़र आ रहा है।

जहां पर बोहोत सारे व्यक्ति --

इस इमेज में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस नज़ारे में एक प्रवेश द्वार नजर आ रहा है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है।